ये एक घर दिखाई दे रहा है मुझे घर के अंदर आई थिंक को शायद शॉप खुली है वहां पे एक लेडिस और उसका बेटा खड़ा हुआ है।

तीन डाइनिंग टेबल हैं एक डाइनिंग टेबल पे एक लेडिज बैठी हुई है ए_सी लगे हुए हैं दो टू टाइप के और डोअर है काफी ब--

एक कॉलेज रूम लग रहा है जहां पे टेबल्स हैं और काफी लड़की और लड़के एक पंक्ति में लाइन बनाकर बैठे हुए हैं और--

कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं और सामने एक विंडो भी है और बच्चों ने ब्लैक बैग और वॉटर बॉटल भी रखा--

यहां पर जीपों काफी जीप खड़ी हुई है और जीप का काफी--

और अलग अलग तरह की जिप्स खड़ी हुई है और तीनों ब्लैक कलर की है और पेहली जीप के टायर बहोत ज्यादा बड़े और दूसरी के छोटे छोटे टाय--

ग्रीन कलर की पत्ती है ट्रायंगल में भी अ पेड़ दिखाई दे रे हैं कुछ लोग काफी दूर खड़े हुए लड़--

मेरे सामने एक स्टेज है जिस पे मेट बिछाया गया है रेड और ग्रीन कलर का।

और लाइट्स भी काफी रंग बिरंगी दिखाई दे रही है उसके साथ एक स्टेज है स्टेज के ऊपर फ्लाओ फ्लावर के साथ सजाया गया सोफा पड़ा हुआ है।

मेरे काफी मेरे सामने काफी बड़ा एक गोदाम बना हुआ है काफी सारा काफी बड़ा--

ट्रक खड़ा हुआ है और ट्रक के बीच में समान रखा गया है। एक काफी दूर पे एक पेड़ और पेड़ के पीछे गाड़ी वाइट कलर की--

वहां पे जमीन पे मिट्टी वगैरा अ बसरी वगैरा डाल रहे सरिए वगैरा भी उन्होंने अ डाले हुए हैं।